नीचे एक मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का मंदिर लग रहा है महाकाल का मंदिर लग रहा है महादेव का मंदिर लग रहा है ।

एक दो तीन साइकिल साइकिल दिखाई पड़ रहा है एक ठेला दिखाई पड़ रहा है जो अभी सब लगा हुआ है ठेला पर सामान ढोने का काम किया जाता है।

इस पिक्चर में फिर से हमें एक बार पॅट्रोल पंप का सिन दिखाई पर रहा है।

जो कि बहुत ही सुंदर है कोई भी लिखा हुआ है जो हमें ठीक से पढ़ने में नहीं बन रहा है लेकिन महाकाल महाकालों के काल महाकाल ।

क्योंकि फूल लोग यहां से किसी मरीज को अस्पताल मे देने के लिए ले जाते हैं या किसी को गिफ्ट देने के लिए ले जाते हैं या वैलेंटाइन डे के दिन इसको गिफ्ट किया जाता है |

और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पार्किंग है इतना बड़ा पार्किंग शायद ही कहीं कहीं पर देखने को मिलता है ।